यह किसी मकान की फोटो दिखाई दे रही है जो कि बहोत ही पुराना जैसा बना हुआ है।

यहां पर दो काउंटर रखे हुए हैं जिनके ऊपर दो कंप्यूटर भी रखे हुए दिखाई--

यह किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जो की किसी रेस्टोरेंट का हॉल है।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

ये किसी नर्सरी की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे नीम के पौधे पड़े हुए नज़र आ रहे है।

ये एक मेट्रो स्टेशन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक मेट्रो ट्रेन आती हुई नजर --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

ये किसी गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां बाहर की ओर कुछ ब्लू और व्हाइट बलून से गेट भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे छत में लैंप भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और यहां पर लकड़ी की दो स्टूल भी पड़ी हुई है।

ये किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर दो बाइके खड़ी हुई है इन दोनों पर हेलमेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।